सफेद ब्रेड के बहोत सारे पैकिट हैं।

और भी खाने की चीजें रखी है।

ये टायर जैसी पाइप हैं।

दुकान में कई आदमी है।

यहां लैपटॉप और टी_वी भी रखा है।

यह तस्वीर एक मॉल की है।

पारदर्शी दरवाजा लगा है।

यो तस्वीर एक ऑफिस की है।

यो तस्वीर वॉश बेशन और टॉयलेट सीट की है।

सकूल में कई बच्चे बैठे है।

यहां और भी हरे भरे पेड़ और--

इसमें बहोत सारी मशीने --

मंदिर जैसी लग रही है।

कुत्ते बिल्लियों के खाने की चीजें हैं।

बहोत सारे बोर्ड लगे हुए है।

मोबाइल के बारे में लिखा है।

यहां तीन ज्योत दिख रही है।

सड़क पर कई आदमी जा रहे हैं।

सड़क के किनारे ऑटो रिक्शा --

ये फोटु एक कंपनी का है।

यहां कई टेबल और सोफे भी--

इसमें कुछ कपड़े रखे हैं।

ये तस्वीर कुछ मजदूरों की है।

ये मजदूर लेंटर डाल रहे हैं।

यो तस्वीर एक बड़ी कंपनी की है।

झंडे भी लगे हुए हैं।